इस तस्वीर में कुछ लड़के रेस लगा रहे हैं दो लड़कों की टी शर्ट येलो कलर की है।

कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुएं हैं।

कुछ सीमेंट बजरी वगैरा बिखरी है उसके पास --

इस तस्वीर में एक ऑटो नजर आ रहा है।

और न्यू डाइल जिन्होंने साइड पे रखें कुछ सॉस वगैरा है कुछ स्टील के बर्तन हैं।

और आसपास और भी छोटे छोटे मकान बने हुए है।

और उसके बाहर दो स्कूटी लगी हैं दूसरा कैफे भी है पास में बर्गर किंग ।

उसके बाहर दो स्कूटी एक मा मोटरसाइकिल लगा है बहोत बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं।

पास में एक बड़ी कार भी खड़ी है।

फेस के लिए प्रोडक्ट टाइम फेशियल हैं गोल्डिस अ गोल्ड पैक है।

जिसमें बहोत सारी वाशिंग मशीन पड़ी है रेड ब्लू ब्लैक ब्लैक व्हाइट ग्रे अ कलर कि है और--

तस्वीर में एक स्टेज है जिसके स्टेज पे अह--

दूर दूर तक बाजू दूर दूर तक बहोत बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं।

और पैनका बहार काफी बड़ा बोर्ड भी लगा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा समुंदर नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे एक छोटे छोटे घर बने हुए है जिन घरों को ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है।

पास में बिजली घर है और उसमें छोटे छोटे पार्क में छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

और एक आदमी की परेशान नजर आ रहा है।

और रिजॉर्ट के पास एक पार्क भी बनी है कुछ लोग वहां चलते नजर आ रहे हैं।